बोहोत बड़ा एक ग्राउंड है जिसमें लाल रंग का एक बाउंड्री पे लाइन दिया गया है चारों तरफ से एक रोड बनी है जिस --

लाइन में सब खड़ी है और यहाँ पर सब प्रेड कर --

यहाँ एक प्रवेश द्वार है जो की सफ़ेद रंग का है ऊपर की तरफ बहोत सारे यहाँ --

बाहर की तरफ भी कुछ सेजे सजा के रखी गई है और इसमें बोर्ड में सफेद रंग से लिखा गया है बहोत सारे सामाने भरी है।

और बहोत ही सुन्दर-सुन्दर यहाँ पे स्नेक प्लांट और यहाँ पे बहोत सारे पेड़ लगाए गए है एक मूर्ति भी सफेद रंग की रखी गई है।

अंदर की तरफ और बहोत सारे बाहर की तरफ कुर्सियां लगाई गई है जो कि काले रंग की है।

घर बन रहा है यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पुरुष है जो कभी काम कर रहे है।

एक सफेद रंग की यहाँ पर स्कार्पियो लगी हुई है और यह रोड के किनारे साइड में लगी हुई है।

यह एक शॉप है यहाँ पे बोहत सारी खुर्सीया लगी हुई हैं पीछे की तरफ एक फ्लॉवर वाला कर्टन लगा हुआ है।

सामने में बड़े - बड़े यहाँ पर कांच लगे हुए है।

और ऊपर में एक पूल बनी हुई है जिसके ऊपर मे बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे खड़े है।

यहाँ पर एक घर बन रहा है जिसके ढलाई हो गई है।

और यह सभी बाँस बहुत ही अलग -अलग तरीके से लगाए गए है नीचे की तरफ एक बाउंड्री भी रखी गयी है और छड़ भी हैं।

जो की बाहर की तरफ कुछ कांच खुले हुए है और यह नीले रंग के है।

यहाँ पर दोनों साइड एक बोर्ड लगी हुई है और सफेद रंग से इस बोर्ड पर लिखा गया है।

और बहोत ही रंगी बेरंगे फूल रखे गए है सबकुछ--

यहाँ एक पार्लर है और इसमें बहुत सारी चीजें सजा के रखी गई है दो--

और यहाँ पर महिलाए कुछ नीले रंग का वस्त्र धारण की हुई है और कुछ लाल रंग का की हुई है।

सफेद रंग का पंखा लगाया गया है लाल रंग के बलून से सजाया गया है बहोत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है उस पे--

यहाँ पर दो दुकाने है जो कि शटर बंद की हुई है और एक नाला भी यहाँ दुकान के सामने से गुजर रहा है।

आकाश भी साफ नज़र आ रहा है दिन का समय है यह--

बहोत सारी महिलाएं और पुरुष है यहाँ पर एक महिला यहाँ बैठी हुई है जो कि काले रंग का दुपट्टा ली हुई है।